दूर दूर में बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा--

जिसमें तीन महिला है और एक पुरुष है।

जमीन में भी बहोत अच्छे तरीके से दीया मिला को सजाया गया है।

दी में पूरा पानी भरा हुआ है जो कि हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा पत्थर है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे जमीन में छोटी छोटी घास उगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे एक रास्ता है जिसके किनारे में दो बिजली का पोल है और बहुत सारा तार है।

सैलून के दरवाजा शीशा से बना हुआ है।

बगल में काले रंग का कुर्सी लगा हुआ है जिसमें एक बच्ची बैठी है और एक व्यक्ति खड़ा है दिखाई दे रहा--

पीछे में ही एक बड़ा सा टावर भी है।

पीछे में दीवार का रंग ब्लू और पीले रंग का है।

इसको चारों तरफ से रेलिंग से घेर दिया गया--

घर के सामने से एक बाउंड्री दिया गया है और उसमें ब्लू रंग का रेलिंग लगा हुआ है।

यह एक स्टील एंड अल्युमिनियम के दुकान का दृश्य है।

इसके अन्दर के दीवार का रंग हरा है।

क्योंकि बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

वहां पे बहोत बड़ा बड़ा क्राफ्ट टॉयज बनाए गए हैं।

एक व्यक्ति अपने फोन से फोटो ले रहा है।

बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कपड़े के दुकान का दृश्य है।

यह एक फर्नीचर हाउस का दृश्य है।

उसके किनारे किनारे लकड़ी का ही भूरे रंग का कुर्सी भी लगाया गया है।

इसके ऊपर में एक ऑरेंज रंग का बैनर और एक पीले रंग का बैनर लगा हुआ है।

सामने से इसको एक मशीन से फंसा कर उठाया गया है।

उसके बाहर में ही बहुत सारा भीड़ इकट्ठा दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा बिजली का पोल है और ऊपर में बहौत सारा बिजली का तार भी दिखाई--

यह एक बड़ा सा खेत का दृश्य है।

यह एक बड़ा सा मॉल का दृश्य है।

नीचे टाइल्स में ही एक छोटा सा बच्चों को खेलने वाला गाड़ी रखा हुआ है।

सभी बच्चे एक दूसरे के पीछे खड़े हैं।

यहां पे किनारे किनारे छोटी छोटी घांस उगी हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सारे टाइल्स भी दिखाई दे रहा है।

दीवार में उजले रंग का बल्ब भी जल रहा है।

बहुत सारा पीछे में ईंटा पड़ा हुआ है।